पोस्टर दिखाई दे रहे जिनमे कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कई सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और कई सारे बाँस के पिलर दिखाई दे रहे हैं।

पोस्टर दिखाई दे रहे है यहाँ पर कई सारे पेड़ -पौधे दिखाई दे रहे हैं और कई सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं कुछ बाइक --